और विजय विजय पुस्तक भंडार दुकान है उस बोर्ड पे लिखा हुआ है जी.एस.टी. --

क्रिस्चियन धर्म का ये महानायक महागुरू हैं ।

ये तस्वीर गौतम बुद्ध जी का है जो कि मार्ग-दर्शक इन्हे कहते हैं।

और बहुत सारे पोस्टर लगा हुआ है । काफी स्ट्रांग हय । बिजली का तार भी है ।